यहां पर मैं देख सकता हूं कि मुझे कुछ बस भी नजर आ रही है।

और मैं देख सकता हूं कि मुझे कैमरे भी नजर आ रहे हैं।

और मैं देख सकता हूं कि मुझे कुछ अ पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

और में देख सकता हूं कि मुझे एक समुंदर भी नजर आ रहा है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं कि मुझे कुछ उम्म आदमी भी नजर आ रहे हैं।

और बिल्डिंगे भी नजर आ रही है।

और में देख सकता हूं की--

कुछ लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं।

और एक कार भी रखी हुई है।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

सब्ज़ी बेच रहे हैं और जैसे गोभी भटा टमाटर आलू --

जैसे कि मैं देख सकता हूं मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है।